यहां पर काफी सारे लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

मेट्रो आई हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर एक सैलून का दृश्य दिखाई दे रहा है।

एक युवक का सिर नजर आ रहा है।

शीशे का ग्लास नजर आ रहा है।

कुछ पाउडर सामान रखा हुआ दिख रहा है।

यह एक जिम का दृश्य है।

बहोत सारे फूड्स का फोटो लगा हुआ है।

दीवालों पर बड़ी बड़ी झूमर वाली लाइट नजर आ रही है।

एक फायर एक्सटिंगुइशर दिख रहा है।

इसमें बहोत सारे खिड़की बने हुए नजर आ रहे हैं।

दो बड़े बड़े स्टैंड पर बहोत सारे किताबें रखें हुये दिख रहे हैं।

यहां पर बड़े बड़े विशाल वृक्ष नजर आ रहे हैं।

छोटे छोटे पौधे उगे हुए नजर आ रहे है।

कुछ स्कूटी पार्क की हुई दिख रही है।

यह एक ग्राउंड का दृश्य है।

पीछे एक साइकिल दिखाई दे रहा है।

काफी सारे मकान नजर आ रहे है।

यहां पर हमें एक बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

यहां पर हम बहुत सारे रैकों में बहुत सारे कपड़े रखे हुए देख सकते हैं।

दो युवक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक बड़ा सा पीले रंग का बिल्डिंग दिख रहा है।

काफी सारे डी_जे लगे हुए देख सकते हैं।

इंदिरा भवन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।